सामने बहोत सारी शॉप दिखाई दे रही है।

दे रहा है यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई--

दे रही है यहां पर एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई--